यहां पर लेडी खड़ी है जिन्होंने ऑरेंज येलो कलर की साड़ी पहन रखी है ।

एक लड़के ने लाइट ग्रीन कलर के टी-शर्ट पहन रखी है। यहां पर एक ऑटो खड़ा हुआ है। ऑटो पे एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जिसमें कुछ बेंच पड़ी हुई हैं।

यहाँ पर यहाँ का गेट काफी बड़ा सा ब्लैक कलर का है यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर एक रोड दिया है जहा पर एक ऑटो जा रही है यहाँ पर एक लेडी है जिन्होंने।

यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने येलो कलर की टी-शर्ट पहन रखी है।

यहाँ पर एक मार्किट एरिया है जहाँ पर एक चिकन शॉप है जहाँ पर कुछ मछलिया रखी हुई है यहाँ पर एक बाल्टी है यहाँ।

आदमी आ रहे हैं जिन्होंने वाइट कलर की टीशर्ट पहन रखी है वाइट कलर का मास्क लगा रखा है।

यहां पर एक डेयरी है जिसके बाहर एक ठेला लगा हुआ है यहां पर एक कार खड़ी हुई है यहां पर एक रिक्शा जा रहा है।

यहां पर एक मॉल है जिसमें काफी सारी डेकोरेशन की गई है ई --

टेबल पर वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ है जिस पर आटे की लोईया रखी हुई है यहाँ पर कुछ पकवाने रखे हुए है।

यहाँ पे एक लड़की योगा कर रही है जिसने येलो कलर का कुरता पहन रखा है वाइट कलर का दुपट्टा बांध रखा है।

यहां पर अह एक ब्लैक कलर की चेयर डली हुई है।

यहां पर एक टेरिस है जहां पर तीन ब्लैक कलर की टंकियां रखी हुई है।

यहां पर एक लड़का बैठा है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

यहाँ पर एक रेड कलर की चेयर डली हुई है वाइट कलर की टेबल डली हुई है।

यहाँ पर कुछ लगी हुई है यहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई है वाइट कलर की जिस पर एक आदमी बैठे है।